जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।

यहां बहुत सारे रंग बिरंगे टी शर्ट --

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं।

जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह एक रेस्टोरेंट है यहां बहुत सारी कुर्सियां और टेबल लगी हुई है।

पूजा कर रही हैं शायद ये छठ मां का पूजा हो रहा है।

अच्छे से एक एक छड लगाके बढ़िया से उसे जोड़ा गया है और कुछ खड़े खड़े छड भी हैं और कुछ--